यह एक कॉलेज या हॉस्पिटल का कोड़ी रूम है।

पीछे बैलून से सजाया हुआ है। प्रोग्राम जैसा लग रहा है।

यहाँ पर एक लाइट दिख रही है। अंदर एक लड़की छोटी सी दिख रही है टेबल दिख रही है।

और एक आदमी की बच्चा ऊपर बैठा हुआ है।

पत्रे की खुर्सी पर पेड़ लगा हुआ दिख रहा है छोटासा उसकी--

कार सर्विस सेंटर जैसा पंखा दिख रहा ऊपर लगे हुए--

जो कि दे रहे हों उसे रिजल्ट दिखा रहे हों बच्चों के।

एक मैडम ने पेपर साइन कर रही है हाथ लगाते हुए।

नीचे टपरी दिख रही है अ जैसे कुछ कपड़ो की दुकाने--

यह एक शॉप या ऑफिस जैसी दिख रही है पंखा लगा हुआ है नईइ जैसे शॉप ओपनिंग करी हो।

यह एक बिजनेसमैन ऑफिस दिख रही है।

फेन दिख रहा है टेबल पर लैपटॉप वगैरा कीबोर्ड वगैरा दिख रहे हैं।

जैसे सिग्नल लगा हुआ दिख रहा हैं एक आदमी ने बेग टांगे हुवे हैं।

जहां पर पेड़ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

हैरिंग टाइप के दिखाई दे रहे है गोल गोल फ्लावर ।

और कांच की टेबल्स तक दिखाई दे रही है सीढ़ियां है।

अह ये शायद कहीं मऊ या कुछ दूसरी जगह दिख लग रहा है ऐसा है।

यह एक स्कूल है जहां पर कुछ छात्राएं हैं।

प्रोग्राम में हिस्सा लिए है जैसे राखी बना रही है कुछ ऐसा लग रहा है।

उधर भी घर बने हुए हैं। टैक्टर खड़ा है।

इधर से कुछ खाई जैसा कुछ दिख रहा है।

यह पिंजरा दिख रहा है ज्यादा मिट्ठू है।